--और यहाँ पर एक कपड़ा पड़ा हुआ हैं कुछ एक पॉलिथीन हैं ब्लैक कलर की एक नीट पड़ा हुआ हैं।

रोज लगे रोज लगे हुए है जो की पिंक कलर के रोज है ऑरेंज कलर वाइट कलर --

और यहाँ पर एक और कार रखी है जो वाइट कलर की कार है जो भी बहुत--

--और यहां एक गाये खड़ी हुई हैं और एक बड़ा सा डस्टबिन रखा हुआ हैं और ठेलो के पीछे--

जिसमे बहोत सारी मच्छलीयों की दूका --

अ कुछ पगड़ी टाइप के पहने हुए है स्टैच्यू में और यहाँ पर कुछ लकड़ी वगेरा लगी--

यहाँ पर कुछ बाइक वगैरह खड़ी हुई है और एक ब ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं।

और यहाँ पे कुछ चेयर रखी हुई है जिन पे वाइट कलर का क्लोथ लगा हुआ है नीचे रेड कलर का कार --

और यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए है और अभी लाइट अ ह अ जल --

यहाँ पर एक हेल्थ केयर सिस अ सेंटर है अ क्लिनिक हैं ।